जो डॉक्टर है और वह कोट और स्ट्रेचेज लिए हुए हैं।

और जीप के पास एक बूढ़ा आदमी है।

यहां छठ पूजा चल रही है जिसमें --

जिसके पहिये पानी में डूबे हुए हैं।